सामने पन्नी मे कुछ कीड़े रखे हुए है कीड़े मे से कुछ बाल नीकल रहे है। पन्नी सफ़ेद कलर की है कीड़े सफ़ेद कलर के है कुछ कीड़ो की आखे भी दिखाई दे रही है कीड़ो कीड़ो का मुह छुपका हुआ सा है।

पीछे पेड़ लगे हुए है बहुत सारे वहाँ एक डंडे पे अपना हात रखे हुए क का काले कलर की झालिया है वह लगी हुई है उसके पीछे वो खड़ा है।

और पीले रंग का है जमीन पर स्प्राइट और जैसी कुछ बोतले रखी हुई है।

एक लड़की का हात दिखाई दे रहा है एक लड़का है जो मास्क पहने हुए चश्मा लगाए हुए है और कुछ खंबे दिखाई धे रहे है एक नाव का रंग ऑरेंज है।

और आगे टीम लगी हुई हैं बगल मे एक घर कुछ घर बने हुये है जो सफ़ेद और नीले कलर की है बगल मे एक रिक्षा चल रहा है।

ऊपर टेबल लो पर भी कुछ मशीने रखी हुई है दीवार का रंग राहा है जमीन पर बहुत सारा गंदगी डली हुई है।

सामने दो क्रेटे है जीनमे एक क्रीट मे कम मछली है एक मे मछलिया भरी है एक टोकरी भी डली हुई है टोकरी मे मछलिया नहीं है एक ताखी भी डली हुई है और--

सामने एक बड़ा शोरूम बना हुआ है जिसपे बहुत सारा सामान रखा हुआ है उसके एक कार्डबोर्ड लगे हुए है जो पीले कलर के--